काफी अच्छा उधर जैसे ही कुछ आदमी है जोकि जा रहा है काफी अच्छा जगह है मस्त है देखने में भी मस्त लग रहा है काफी मस्त जगह है।

यहां पर भी कुछ सैलून हैजो काफी अच्छा सैलून है काफी अच्छा बाल काटता है काफीअच्छा जो की सैलून है।

काफी अच्छी तरह से बनाया गया है जो कि काफी अच्छा है काफी शानदार महल लग रहा है | दो तीन माले दो महल का लग रहा है जोकि काफी अच्छा है जगह भी बहोत अच्छा लग रहा है | देखने में भी बहोत शानदार लग रहा है ।

तो काफ़ी अच्छा जगह है जो महल का मंदिर बनाया गया है जो की स्पीकर भी लगा हुआ है ऑरेंज भी लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा जगह है देखने में बहुत स्मार्ट लग रहा है काफ़ी अच्छा जगह है।